ये एक दुकान है इसके अंदर बाल काटे जाते हैं दाढ़ी की जाती है।

दू दुकान है और दुकान के आगे कुछ सामान पड़े हैं ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है सफेद कलर का पेंट किया हुआ है।

यहां पर एक आदमी बैठा है आदमी के ऊपर आसमानी कलर का कपड़ा रखा हुआ है।

सामने एक ट्रैक्टर है ट्रैक्टर पे एक मशीन लगी हुई है मशीन के पास कुछ आदमी खड़े है पीछे बहुत बड़ा एक पेड़ है।